इस तस्वीर में हमें बहुत ही बड़ा ब्रिश दिखाई दे रहा है उसके नीचे पानी बह रहा है।

उसके आगे रोड गया है रोड पे एक कार जा रही है।

इस तस्वीर में हमें डांस क्लास रूम दिखाई दे रहा है।

ऊपर लाइटें लगी हुई हैं दीवाल पे एक मेडल जैसा टंगा हुआ है।

जहां पर आगे की तरफ एक आदमी खड़ा हुआ है और बहुत सारी बाइकें खड़ी हुई हैं।

इस तस्वीर में हमें मच्छी दिखाई दे रही है यहां पे बहोत सारी मच्छियां रखी हुई है जो बड़ी बड़ी--

एक आदमी बैठकर फोन चला रहा है। दो तीन आदमी खड़े हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें आशियाना पेंट्स की शॉप दिख रही है।

इस तस्वीर में रोड का दृश्य दिखाया गया जहां पर दो आदमी एक्टिवा से आगे की तरफ जा रहे हैं।